पिक्चर में एक बड़ा सारा खेत बना हुआ है जिसके ऊपर एक रेड कलर का ट्रैक्टर है जिसकी छत हरे कलर के पन्नी से ढकी है और सामने एक नारंगी मशीन लगी है जिस जो जमीन में गड्ढे कर रही है और--

जिसके पीछे एक कथई शटर है और सा साइड में एक कथई कलर का गेट है जो खुला है उसके ऊपर छोटा सा लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है।

--और उसके सामने काफी घने बड़े-बड़ पेड़ भी नजर आ रहे --